सामने एक महराजा शिवाजी की मूर्ति बनी हुई हैं।

जिसमे कुछ लोग किसी गेटप में हैं।

जिसमे धन कृपाल स्वीट्स लिखा हुआ है।